ऐश्वर्या ब्यूटी केयर एंड कॉस्मेटिक लिखा है।

सामने एक मिट्टी का मैदान है।

और प्रॉमिस बहोत सारी सफेद रंग की बाल्टिया हैं जिसमें अलग अलग रंग के पेंट हैं।